यह एक नदी है जिसमें एक वोट है वोट के ऊपर एक आदमी हैवोट को बहुत अच्छी ब्लू कलर से पेंट की हुई है।

पीला कलर से पेंटिंग किया गेट को बहुत सारे रंग दिए है।

पीछे एक दरवाजा है दरवाज़े मे ब्लू कलर का--

यह ऑक्सीजन टंकी है आक्सीजन टंकी तीन गो तीन तीन ठो है।

सड़क पे बहुत सारे ब गाड़ियां जा रही--

प्याज है बहुत सारे गैस रखें हुए हैं।

यह एक आधार इनरोलमेंट क्लब है।

यहां पे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है टेबुल है।

घर के नीचे बहुत सारे पेड़ रखे हैं लगे हैं।

बहुत से अगरबत्ती भी हैं।

बगल में बहुत सारे लोग खड़े हैं यहां दुकान के पास बहुत सारी चेयर रखे हुए हैं।

यह एक सीटी है जहां पे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है।

दुकान में बहुत सारे लोग है दुकान में --

जिसे सभी को यूज़ करते हैं यहाँ पे एक टेबल रखा गया है।

और बहुत सारी कुर्सियां भी है। टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है।

यह घर है घर को काफी अच्छी तरीके से रंग दिया गया है।

यह एक समुद्र है समुद्र में काफी बड़ी बड़ी बोट भी है।

और पहाड़ मे काफी सारी चीजे रहती है।

मंदिर के बगल में एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है।

उनके बगल में कमल पत कमल भी है।